युवक ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी है.

जिसने लाल टी-शर्ट पहन रखी है.

दुकान में लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है.

जिसमें सफेद अक्षरों से नैसर्गिक पर्यटन केंद्र लिखा है।

और एक गेट दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के अंदर सफेद लाइटें लगी हुई है।

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है।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

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं.

एक नांव दिखाई दे रही है.

एक स्टेज दिखाई दे रहा है.

एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

नीचे बहोत सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

साइड में एक झोपड़ी भी दिखाई दे रही है.

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में खिड़की और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के किनारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं.

सफेद लाइटें भी दिखाई दे रही है।

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में सीडीयां भी दिखाई दे रही है.

यहां एक गेट दिखाई दे रहा है.

कांच के अंदर बहुत सारी मिठाई दिखाई दे रही है.

बिल्डिंग के सामने बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं.

यहां एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है.

यहां एक नदी दिखाई दे रही है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है.